यहां पर एक कंकाल रखा हुआ है जिसका हड्डी दिखाई दे रहा है यहां पर एक मशीन रखा हुआ है यहां प।

पर्दा लगा हुआ है यहां पर बहुत है यहां पर बेड कलर का है यहां पर बोर्ड है जिसमें चार्जर लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा साइकिल दिखाई दे रहा है रेड ब्लैक वाइट यहां पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है इधर।

यह बहुत बड़ा नदी है जिसमें बहुत सारा पानी सब है।

इधर का एक तार दिखाई दे रहा है उधर बहुत सारा बॉल लगा हुआ है बहुत सारा पैर पौधा सब दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारा आदमी सब।

यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा रंग बिरंग का फूल से सजाया गया है मूर्ति का नाक मुँह कान।

ग्राउंड है जिसमें मैच खेला जा रहा बहुत सारा आदमी सा मैच खेल रहा उधर हरा भरा पेड़ पौधा सब--

दिखाई दे रा है वहा पर बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रा है ऊपर उजाला कलर का घर दिखाई दे रा है यह लोहा का से घेरा हुआ दिखाई दे रा है यहां पर खेरी बनाया गया हैं।

यहां पर रोड ढालने वाला मशीन है जिसमें बहुत सारा चक्का लगा हुआ है इस मशीन प बहुत सारा सामान सब रखा हुआ है पीछे--

यहां पर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है इधर बहुत बॅग रखा हुआ है आदमी कॉलम से लिख रहा है ऊपर बहुत।

पंखा मतलब लगा हुआ है इधर का बहुत सारे खिटके सब दिखाई दे रहा है।

बॉल बड़ रहा है ऊपर अंधेरी रात दिखाई दे रहा है ऊपर बहुत सारा पंखा सप लगा हुआ है उधर आदमी का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

लाल गुजराल रंग से पेंट किया गया और रोड है।

दिखाई दे रहा है कुरकुड़े बिस्कूट बहुत सारा सामान था एक बेंच रखा है।

कपड़ा लेकर पहन रखा है ऊपर बहुत सारा बिजली सब लगा हुआ है इधर पंखा दिखाई दे रहा है।

पीला कलर का दिखाई दे रहा है नीचे बहुत सारा मोटरसाइकिल सब लगा हुआ है एक स्कूटी दिखाई दे रहा है एक साइकिल है यहां पर एक तार बिछाया हुआ है उधर।

यह बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत सारा आदमी सब बैठा हुआ है एक आदमी खा रहा है एक लड़का बैठा हुआ है एक औरत घर से बाहर जा रही है यहां पर टी_वी लगा हुआ है।

कमंडल रखा हुआ है इसमें बहुत सारा सामान सब चॉकलेट वोकलेट सब बिक रहा है इधर तराजू करने वाला किलो दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो औरत जा रही है जो माथा पर टोकरी रखी हुई है यहां पर एक आदमी साइकिल चलाते जा रहा है जी झोरा टांगा हुआ है यहां पर--

बारा जमीन है यहा पे बोहोत सारा लाइट लगा हुआ है अंधेरी रात है आसमान काला कलर का दिखाई दे रहा है इधर एक--

यहां पर बहुत सारा हिरण सब दिखाई दे रहा है जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है बीस तीस को हिरन है इधर बड़े बड़े पदा से बहुत दिखाई दे रहा है उधर उजला कलर का।

यहां पर गेट पर एक आदमी बैठा हुआ है जो चेयर पर बैठा हुआ है जो जूता मोजा पहना हुआ है यहां पर पेपर लेट रंग का बल्ब लगा हुआ है यहां पर शादी विवाह होने वाला है।

खेल का मैदान है जिसमें खेल खेला जाता है यहां पर बहोत सारा हरे भरा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर इटा सब लगा हुआ है ऊपर आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है इधर पोल दिखाई दे रहा है जिस पर लाइट लगा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है यहां पर पिक्चर से दिखाई दे रहा है।